कुछ बड़े मुर्गों को देख रहे हैं।

एक बड़ा सा स्टेज नजर आ रहा है।

डांस करते हुए देख पा रहे हैं।

टेज पर हमें कुछ लड़कियां सुंदर वेशभूषा में--

एक बड़े से हाल को देख रहे हैं।

एक बड़ा सा मकान नजर आ रहा है।

कुछ पढ़ते नजर आ रहे हैं।

साथी हमें लोहे के कुछ बड़े रैक देख रहे हैं जिन पर कुछ सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ लोग यहां पर बैठे नजर आ रहे हैं।

जिसके ऊपर लाल रंग का टिन लगा हुआ है।

या हम सामने हॉस्पिटल देख रहे हैं।

हमे यहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

दुकान के ऊपर हमें एक लाल कलर का पोस्टर नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहे हैं साथ ही कुछ चेयर्स लगे हुए दिखाई दे रहे--

चांदनी दीवार पर बहोत हि सुंदर फोटो लगे हुए हैं।

हमें गुलाबी और हरे रंग का बड़ा सा डंबल भी दिखाई दे रहा है।

साइड मे शेड बना हुआ है।